घना जंगल लग रहा है।

ये एक स्टेज है जहाँ पर बहुत सारे --

अभी कुछ कर्मचारी रोड पे काम कर रहे हैं कुछ बच्चा खड़ा हो के देख रहा हैं पीछे एक लाल कलर की ओ --